इस पिक में चिकन लेग पीस है लोलीपोप है सलाद है गाजर है।

बहुत ही प्यारे पीक लग रहा है की नाव पे ये लोग बैठे हुए हैं और आगे की और चल रहे हैं ।